गैंडा के साथ खेल रहे हैं स्टैचू है --

ये सब लग रहा पिकनिक माने--

अर जो प्लेन बहुत अच्छा हैं।

अच्छो बात है की क्या है वहा है।